यहाँ प्रजाती बहुत ही अच्छे दिखते है इनमें छे और सात और प्रजाती दिख रहे है।

यह प्रजाति बहुत ही अच्छे दिखते हैं ये इनमे छे और सात प्रजाति दिख रहे हैं ।

यहाँ एक ताआब से तीन-चार लोग मिल कर मछली को मर के निकाल लिए हैं और दो डब्बे में रखे गए हैं।

यह बहुत अच्छा नजारा है ।

यह एक बाजार का फोटो है जहाँ पर बहुत सारे लोग और भीड़ जमा हुए है ये सामान खरीद रहे है।

और एक यहाँ मुझे आराध्या स्टोर नाम के दुकान दिख रहे है जो की बहुत अच्छे दिख रहे है।

इस घर में एक घड़ी लगाया है दीवाल के सामने ताकि हमलोग समय देख सके।

निमे इसके बगल में एक बोर्ड लगाया है जिसमे कुछ लिखा हुआ है यहाँ का फर्श भी बहुत अच्छा है।